ऐसा लग रहा है इस तस्वीर के अंदर एक बड़ी सी मूर्ती रखी हुई है।

अ सफेद शक्ष अ सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है जोकि काफ़ी छोटा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक बड़ी सी नोका नजर आ रही है।

ये बहुत सारे गेट नजर आ रहे हैं और कुछ टेबले रखी हुई नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर के अंदर एक शक्स नजर आ रहा हैं।

काफ़ी ज्यादा पेड़ पोधे नजर आ रहे हैं और ऊपर कि तरफ भी एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है।

जिनके ऊपर बड़े बड़े बैलून्स रखे हुए हैं।